जमीन पूरी खाली दिख रही है यहां छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े भी पड़े हुए हैं बीच में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

चारो तरफ अलमारीयो मे बहोत सारे सामान लगे हुए है।

अलमारियों में दवाइयों के साथ कुछ शीशियां दिख रही हैं।

इस चित्र में हम एक लड़कियो का डांस देख रहे है।

इस चित्र में हम एक उद्यान देख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक उद्यान देख रहे हैं।

एक औरत सफेद कपड़ा पहनी हुई है एक औरत साड़ी पहनी हुई है।

बंजर भूमि में पत्थरों का कलर पीले कलर का दिख रहा है।

इस चित्र में एक अन्नपूर्णा ढाबा दिख रहा है ऊपर बैनर में ढाबे का नाम लिखा हुआ है।

चारों तरफ सामान ही सामान भरे हुए हैं।

कुछ समान लटके हुए हैं। दुकान के अंदर जाने के लिए एक और गेट लगा हुआ है।

नीचे स्टंप की परछाई दिख रही हैं।

मजदूर ने कपड़ा नहीं पहने हुआ है।

किनारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में हम एक दुकान देख पा रहे हैं।

ऊपर बोर्ड में जिओ लिखा हुआ है पीछे एक नेता का फोटो लगा हुआ है।

इस चित्र में एक अलीकार कार पार्लर दिख रहा है।

ऊपर सफेद आसमान का चित्र पानी में दिख रहा है।

इस उद्यान में हम पेड़ पौधे देख पा रहे हैं।

यहां बहुत सारा सामान रखा हुआ है यह इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिख रही है यहां कूलर पंखा दिख रहा है।